एक स्टैचू भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

दोनों ने मोमबत्ती जला के हाथ में पकड़ रखा है।

इस दुकान में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

दिए जल रहे है भगवान पे फूल माला चढ़ाया गया है।

इस पार्क में हरे हरे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है जो की लाल रंग का है।

पीले रंग का दीवाल दिखाई दे रहा है एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहा है जो कि कपड़े का दुकान है।

चार पांच आदमी एक साथ अंदर घुसे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं।